c ++ में static members के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
static keyword static variable
static function
हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu os version 1110
g ++ compiler version 461
static के परिचय के साथ शुरू करते हैं
प्रथम object को बनाने से पहले static variables zero से इनिशिअलाइज़ किये जाने हैं
static variable की सिर्फ एक copy पूरे program के लिए रहती है
share objects उस variable को शेयर करेंगे
program के अंत तक यह memory में रहेगा
static functions
किसी any object पर निर्भर हुए बिना ही static function अपने आप कॉल हो सकता है
स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम क्लासनेम :: स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर और स्टैटिक फंक्शन प्रयोग करते हैं
अब static memebers पर एक उदाहरण देखते हैं
मैंने पहले ही editor पर एक code टाइप किया है
ध्यान दें हमारा file static dot cpp है
मैं अभी code समझाती हूँ
यह iostream हमारी header file है
यहाँ हम std namespace प्रयोग कर रहे हैं
फिर हमारे पास class statex है
इसमें हमारे पास private की तरह घोषित एक nonstatic variable x है
फिर हमारे पास public की तरह घोषित एक static variable sum है
यह हमारा constructor statex है
इसमें हमारे पास बड़ा हुआ sum है
फिर sum की value x में संचित हुई है
यहाँ हमारे पास static function sat है
इसमें sum sum print करते हैं
फिर हमारे पास function number है
यहाँ हम number x print करते हैं
यहाँ class बंद हुई है
static variable को globally घोषित करने के लिए हम scope रेज़ोल्यूशन operator प्रयोग करते हैं
static variable को access करने के लिए निम्न की तरह लिखते हैं:
datatype classname scope resolution operator और static variable name
अब storage variable sum को आवंटित हुआ है
यह 0 से इनिशिअलाइज़ हुआ है
यह हमारा main function है
यहाँ हम class statex के objects बनाते हैं
जैसे o1 o2 और o3
फिर हम objects o1 o2 और o3 प्रयोग करके function number कॉल करते हैं
static function stat यहाँ accessed हुआ है
class name और scope resolution operator प्रयोग करके
यहाँ sum static variable sum print करते हैं
और यह return statement है
अब program निष्पादित करते हैं
अपने keyboard पर ctrl alt और t कीज़ एकसाथ दबाकर terminal window खोलें
compile करने के लिए type करें
g ++ space static dot cpp space hyphen o space stat enter दबाएं
type करें /stat dot slash stat enter दबाएं
output में प्रदर्शित होता है
number is: 012
result is: 3
now static var sum is 3
अब मैं आउटपुट समझाउंगी
मैं विंडो रीसाइज़ करती हूँ
यहाँ पहले number की value 0 है यानि x 0 है
पहला object value 0 देता है
फिर हमारे पास value 1 है यानि x = 1
दूसरा object value 1 देता है
औए तीसरा object value 2 देता है
फिर sum stat function कॉल करते हैं जो sum की value देता है
result is sum
यहाँ sum बढ़ाया गया है और x में संचित हुआ है
अतः यह value 3 देगा
इसलिए हमारे thus आखिरी output है
static var sum is 3
अब यहाँ o4 की तरह अन्य object बनाते हैं
मैं object o4 प्रयोग करके function number कॉल करुँगी
save पर click करें
अब निष्पादित करते हैं
arrow की को दो बार दबाएं
arrow की को दोबारा दो बार दबाएं
आप देख सकते हैं result is 4
now static var sum is 4
जैसे कि 4th object बनाया गया है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
slides पर वापस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं:
इस tutorial में हमने सीखा
static keyword
static variable
उदाहरण static int sum;
static function
उदाहरण static void stat
एक नियत कार्य में
एक क्लास बनायें जो static variable घोषित करे
variable में कमी करें
और value print करें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
online test pass करने वालोँ को प्रमाणपत्र देते हैं